और स्टूल के ऊपर का हिस्सा है जो काड़ा है नीचे सिल्वर के बड़ रहे है ये।

मने इसमें आइसक्रीम दिखे है जो एक नीचे तो चद्दर बिछी दिखे उसके ऊपर प्लेट धरि है।

और इस प तीन आदमी खड़े हैं और यह दुकान बहुत बड्डी है और इसमें घना ही समान भरा है।

और इस मोर पता नही की लग रहा है ये ग्रीन सी दिखे है जो नीले हरे और लाल और पीले रंग की है।

और इसके साइड में वो पेड़ दिखे हैं और इसमें घणे लोग दिखण लागे कोई खड़े हैं और कोई बैठे हैं और इस पे बहुत सारा समान धराया।

और एक गड्डी भी खड़ी है और ये ट्रक पर पेंट भी कर रखा है शंतरी रंग का है।

अच्छी तरह ददा बना है उस पर लिंटर दे रख्या है घर में--

इस पिक्चर मानने यो ऑफिस रूम की तरिया दिखे है।

और इसमें मेज भी लगा रखी है और इसमें ये जूठे बर्तन रखने के लिए कुछ रख भी रखा है जिसमें जूठे बर्तन रखे जाते हैं।

इस पिक्चर हमने एक बच्चा देखा है जो पाइप चला कर पानी देन लग रहा पौधा ना और ये पौधे फूला के भी हैं और नॉर्मल पौधे भी और क्या कि और काले रंग का पाइप है नीचे यू।

जिसके ये भाहर की लाबी देखे है इसमें परदे भी लाग रह है ओर सोफ़े भी रखे है तीन।

जिसमें चार पांच तो रहे हैं और उनके दोनों तरफ सारे कुर्सी लाग रही है।

नीचे सारा कच्चा है और एक जना दो बैठ के काम करे है और एक जना खड़ा होके उसने देखे है और मुंह कौन सी का भी नहीं दिखता--

और बाहर शीशे का दरवाजा लग रहें हैं और इसमें एडजस्ट फॅन भीं लग रहा हैं और टेबल पे गिलास इधर रखीं हैं।

और इसमें पीछे बिल्डिंग भी दिखे है इसमें एक आदमी भी खड़ा है एक आदमी ईट लग रही है उनके पास खड़ा है दो छोटे बच्चे भी खड़े हैं और सारा उर है।